चित्र में एक केनरा बैंक दिखाई दे रहा है। केनरा बैंक का ऊपर बोर्ड नीले कलर में है और पीछे कुछ हरा पौधे दिखाई दे रहे और नीला आसमान दिखाई दे रहा है। बिजली का तार दिखाई दे रहा है।

जीना बना हुआ है जीना के नीचे एक स्कूटी खड़ी है और हरा बोर्ड दिखाई दे रहा है। नीचे कुछ काले दिखाई दे रहे हैं।

कुछ हरा पौधा दिखाई दे रहा है और गेट के सामने एक ऊंची दीवार हैनीचे बाउंड्री है वो --

और सामने एक मकान दिखाई दे रहा हैऊपर पंजाब बैंक दिखाई दे रहा हैलाल कलर में तार दिखाई दे रहा हैपेड़ दिखाई दे रहा है।

खुला आसमान दिखाई दे रहा है और पेड़ दिखाई दे रहा है बहोत सारे आदमी सीढ़ी पर खड़े हैं और लोहे की सीढ़ी और हरा जेनरेटर है।

इस चित्र में एक बड़ा सा मकान देख रहे हैं उस मकान के ऊपर कुछ नीला कलर में लिखा हुआ है और --

इस चित्र में एक बड़ी-सी दुकान दिखाइ दे रही हैऊपर होटल गैलेक्सी टावर लिखा हुआ हैऊपर लोहे के एन्ग्ल हैंसाइड में एक हरा पेड़ दिखाई दे रहा है। नीचे ये --

मोटरसाइकील खड़ी हुई हैदो आदमी दिखाई दे रहे हैंएक सफेद सा बॉक्स दिखाइ दे --

और ऊपर और बिजली के खम्बे दिखाई दे रहे है तार दिखाई दे रहे है पीछे खुला आसमान दिखाई दे रहा है और लाइट भी जल रही स्कूटर रोड पे दिखाई दे रहा है कुछ स्कूटर मोटर साइकिल खड़ी है। |

बाउंड्री चारों तरफ से घिरी हुई हैखुला आसमान है।

तीन बल्ब जल रहै हैं और कुर्सी लगी हुई हैपास के फर्री से और दीवार चारों तरफ़ से घिरी हुई है पीछे कुछ मकान दिखाए दे रहे हैं और पेड़ दिखाए दे रहे हैंबिजली के खंबा दिखाई दे रहा है।

और एक कार गेट पे है। लोहे का गेट है नी पीछे पार्क में हरी भरी घास दिखाई दे रही है। खुला आसमान दिखाई दे रहा है।

पार्क दिखाई दे रहा हैउसमें कुछ आदमी बैठे हैं पीछे मैदान में कुछ आदमी दिखाई दे रहे हैं और हरा-भरा दिखाई दे रहा है। पीछे पेड़-पौधे दिखाई --